राम भगवान का मूर्ति भी दिखाई दे रहा है। और घोड़ा भी दिख रहा है।

और सामने पर कुछ घर भी दिखाई दे रहा है।

और एक हर रंग का कंबल भी दिखाई दे रहा है।

और सामने पर बैट और कार्डबोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और सामने पर कुछ रोशनी भी दिखाई दे रहा है।

लाल रंग का और सामने पर सफेद रंग का ऐ_सी दिखाई दे रहा है।

कुछ इंसाने भी दिखाई दे रहा है और माउस भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ तस्वीरें के पोस्टर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे सफेद रंग की कुर्सियां और टेबल दिख रहा है।

जमीने भी दिखाई दे रहा है और कुछ इंसान भी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी।

इंसान का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है और चलने के लिए सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक गोडाउन दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारे डिब्बा दिखाई दे रहा है।

शीशा का बना रैक भी दिखाई दे रहा है।

कुछ लाल रंग का फूल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक लड़की का सर दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक सैलून दिख रहा है।

इस तस्वीर पर कुछ इंसान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

व्हाइट गेट भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर कंस्ट्रक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक लाल रंग का चप्पल भी दिख रहा है और कुछ राड भी दिखाई दे रहा है।

और एक ट्यूबलाइट भी जला हुआ दिख रहा है और एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी--

मुझे इस तस्वीर पर सब्जी मंडी दिख रहा है।

कुछ सफेद रंग का चिड़िया भी दिखाई दे रहा है।